ये साइबर को बैलून और अ कलर पेपर से डेकोरेसन करके डिखाई डे रहा है।

और यह साइड में गाड़ी बाइक और आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

फिर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक गर का रूम है और ये रूम को व्हाईट कलर से पेंट कर के है।

ऊपर में बहोत सारा फ्लैग भी दिखाई दे रहा है।

और ये घर का ऊपर में बैलून भी दिखाई दे रहा है।

फ्लोर में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा के दिखाई दे रहा है।

और घर का सामने में एक वॉल भी है जो कि वाइट कलर में है।

यहां मे घर दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में भी बहुत ज्यादा पेड़ और ग्रास दिखाई दे रहा है।

पानी का ऊपर में नाव भी दिखाई दे रहा है।

वायर भी जाके दिखाई दे रहा है।

यहाँ में बड़ा सा जमीन दिखाई दे रहा है।

वॉल का आगे में वायर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रूम का अंदर है।

लोहा के सामने में ब्लैक कलर का टिपान भी दिखाई दे रहा है।

ये एक घर है और ये घर को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

यहां में बहुत ज्यादा चार दिखाई दे रहा है।

यहां में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और पानी का ऊपर में छोटा सा नाउन के तरह भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का ऊपर में ब्लू कलर का तिरपान भी लगाके दिखाई दे रहा है।

ऊपर में अलग अलग कलर के कपरा लटका के भी दिखाई दे रहा है।

आस पास में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

वॉल को जो है ब्लू कलर से पेंट कर के भी दिखाई दे रहा है।

यहां मैं बहुत सारा बच्चा लोग जो है खेल के दिखाई दे रहा है।

यहां हमें बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

घर का आसपास में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।